चित्र मे हमे एक मंदिर दिख रहा है जिसके जो सफेद और लाल रंग का है इसमे हमे कुछ लोग दिख रहे हैं।

यह चित्र एक सड़क का दिख रहा है जिस पर बहोत सारे बनी इमारतें बनी हुई हैं ।

यहाँ चित्र एक मैप का है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान पार्क का ये एक चित्र बना हुआ है जिसमें नक्शा बना है आप देख सकते हैं।

आसमान में बहुत सारे बादल दिख रहे हैं।

जिसमे बिस्किट के पैकेट है कांफ्लेक्स है सेंपू है कोलगेट है साबुन हैऔर बहुत सारी चीज़ें जो घर मे यूज होती हैं।